ये छोले टिकिया का ठेला है। जिस पर छोले टिकिया आ बहोत टेस्टी लग रही है। अरे तो मुंह में पानी ही आ गया। प्यास वगैरह है डाली हुई है छोले टिक्की पर और -

फुल्की भी दिखाई दे रही हैं इस ठेला पर फुल्की भी बड़ी टेस्टी लग रही हैं।

और बी इ वगैरह रखी हुई है और यहाँ पे एक और ठेला दिखाई दे रहा है जिस --

ये एक भगवान की प्रतिमा है जोकि पुरे गोल्ड से सजी हुई है।

अ बिजली की तार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली है। कुछ सुनसान मतलब आते-जाते लोग नहीं दिख रहे हैं।